ये एक कार पार्क का चित्र दिखाई दे रहा है और इस पार्क में कई सारे हरे-भरे पेड़-पौधे भी लगे हुए हैं।